दिखाई दे रही है कुछ पोस्ट भी दिखाई दे रही है।

एक घर भी दिखाई दे रहा है।

यह इमेज एक पेट्रोल पंप --

इस इमेज में कुछ हिरण दिखाई दे रहे --

एक बड़ा सा पहाड़ दिखाई दे रहा है जिसपर पौधे लगे हुए--

इस इमेज में एक गाड़ी दिखाई दे रही है।

टाऊन में कुछ पोस्टर घड़ी दिखाई दे रही है।

एक बच्ची और औरत भी दिखाई दे रही है।

इस इमेज में कुछ लड़कियां बैठकर योगा --

कुछ बिल्डिंग पेड़ पौधे भी दिखाई दे रही है।

बहोत सारे अलग अलग तरह के फुल दिखाई दे रहे हैं।

यह इमेज एक घर की है जिसमें टेबल कुर्सी --